दुकान का अंदर में बहुत सारा सामान भी है जैसे एप्पल बनाना और बहुत कुछ--

बाहर में छोटे छोटे पौधा भी है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

और साइड साइड में छोटा छोटा सा पेड़ भी है।

इस तस्वीर में एक कार शॉप दिख रहा है।

एक इंसान चेयर में बैठ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे गार्डन दिखाई मिल रहा है।

छत को तकता से बनाया हुआ है।

ऊपर में गोल गोल से लाइट भी जलके हैं और पंखा भी चल रहा है।

मुझे सफेद पर्दे भी देख रहा है साइड साइड में हरा पौधा भी है।

यहां मे बहुत सारा सोफा रखा गया है।

और यहां में ब्राउन कलर का टेबल भी है।

और दो लाइट बल्ब भी है और एक लाइट जला हुआ है और एक लाइट नहीं है और एक फिश भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक मुर्गी का फॉर्म दिखाया गया है।

और इस रूम का कलर व्हाइट है यहां में बहोत सारा चेयर रखा गया है।

इस स्टेज को बहुत सारे फूलों से सजाया गया है।

जैसे कि कारपेट बाल्टी और बहुत कुछ सबका अपना अपना दुकान बना के है।

पिक्चर में बड़ा सा माउंटेन दिखाया गया है।

और लोहा भी लगाके हैं और ऊपर सफेद आसमान दिखाई मिल रहा है।

दूर में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।